यह जिम है। यहाँ लोग जो है एक्सरसाइज करने आते है और इसमें तरह-तरह का व्यायाम भी हो जाता है।

स्टील प्लांट इसमें जो है स्टील का सारा बर्तन वगैरह सब चीज बनता है। उसके बगल में दो चार और जो है सो दुकान है। उसमें फर्नीचर का दुकान है।

यहाँ पर बहुत आदमी है बस स्टैंड लग रहा है यहाँ जो है सो यात्री का सुविधा है रहने का भी सुविधा है।

पूरा पत्थर है उसमें दो आदमी भी है लग रहा है दब गया है एक मुस्कुरा रहा है एक कोई खड़ा है।

--और बगल में जो है सब प्लास्टर नहीं हुआ है बिजली का वायरिंग भी जो है सो हो रहा है और जो है सो कुछ काम हो रहा है एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

बहुत ऊँचा पहाड़ है उसपे एक आदमी जो है सो चढ़ रहा है ऊपर आसमान साफ़ है एकदम बिलकुल बादल सा जैसे लग हुआ है।

शादी का माहौल है यहाँ पे जो है एकदम कुर्सी टेबल सब लगा हुआ है बिलकुल जो है दुल्हन की तरह जो है सजा हुआ है।

कोई ऑफिस सा दिख रहा है आठ दस जो है सो आदमी है वहां पे निचे जो है एकदम बिलकुल साफ़-सुथरा है ब्लू कलर का खिड़की लगा हुआ है।

बहोत सुंदर स्टेज सजाया हुआ है बहुत सुंदर। पीछे बैकग्राउंड में लाल कलर से पर्दा टन्गा हुआ है आगे--

दो चार मूर्ति रखा हुआ है और जो है सो कई कलर का फुल लगा हुआ है। जैसे कि लाल है ब्लू है व्हाइट है।

कुछ यात्री इस इधर टहल रहे है रास्ता भी है बढ़िया रास्ता है पिल्लर खंभा है बहुत चीज़ है यहाँ पे।

बहुत पहाड़ दिख रहा है बहुत हरा-हरा पेड़ सब भी दिख रहा है बड़ा-बड़ा पत्थर दिख रहा है निचे जो है सो हरी साग-सब्जियां है घास भी है।

बहुत सुंदर शोरूम है फॉर जी लिखा हुआ है और जो है ब्लू कलर का कुछ मशीन है पड़ा हुआ निचे टाइल्स लगा हुआ है।

शटर लगा हुआ है शटर अभी खुला हुआ है ऊपर पिला कलर से पेंट किया हुआ है नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

कुछ ऑटो जो है लेकर आ रहे है बगल में एक जो है सो छाता लगा हुआ है बड़ा सा छाता है।

बहुत सुन्दर जगह है बहुत बड़ा बिल्डिंग भी है उसमें ए_सी लगा हुआ है चार ए_सी लगा हुआ है दो साइकिल खड़ा है।

बच्चे का गार्जियन है झूला है लोग झूल रहा है और जो है सो बगल में पौधा है पेड़ है फूल सब भी खिला हुआ सब --